आप देख सकते हैं सामने कंट्रक्सन का काम चल रहा है। यहाँ पर ये तस्वीर खिंचवा रहा है और आप देख सकते हैं पास में ही एक घर ओर दिख रहा है।

आप देख सकते है सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथ में कुछ पोस्टर्स दिख रहे हैं।